और सामने की तरफ स्टील की रेलिंग लगी हुई है।

पानी का एक फुवारा चल रहा है।

ये एक बड़ा सा रेस्टोरेंट बना है।

जैसे कि चार्जर बैक कवर और मोबाइल वगैरह--

और आस पास कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

जहां पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं।

इस पिक्चर में एक बड़ा तालाव बना है।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

यह एक बच्चों का स्कूल है जो कि किड्स स्कूल है।

इस पिक्चर में एक खूब बड़ा सा मैदान बना है।